से चढ़कर लोग ऊपर जा रहे हैं एक आदमी सफेद रंग की अ टी-शर्ट और --

और उसके पीछे अन् लोग बैठे हुए हैं |

ट्रक पड़ी हुई है ट्रक के अ सामने दो गाड़ियां पड़ी हुई हैं।

फंक्शन हॉल है जहाँ पर स्टेज बना हुआ है कुर्सी लगी हुई है और --

एक ब्रिज बना हुआ है | ब्रिज से नीचे सीढ़ियां है | ब्रिज के यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई है |

इस चित्र में हम देख सकते है कि यह एक --

पकर कर अपना फोटो ले रहा है और उसके इर्द-गिर्द लोग हैं।

पेय जल लगे हुए हैं और उसमें से पानी बह रहा है।

इसपे चित्र में हम देख पा रहे है कि यह एक रोड है एक आदमी --

इस चित्र मे हम देख पा रहा है कि यहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ हैं |

और उसके पीछे यह बहुत सारी हरियाली दिख रही है |

और पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे --

एक पेड़ है उसके बाहर आ एक जाड़िया पड़ी हुई है |

जहाँ पर एक लड़की भारत माता बनी हुई है | बाकी सब उनको हाथ जोड़ रहे है |

तीन पुरूष च चल कर जा रहे है |

ये चित्र में हम देख पा रहे है कि यह एक चर्च के अंदर ली गई है और --